ऐसा लग रहा है कि यह किसी विशेष प्रकार का अवसर या त्यौहार के लिए लगाया गया है।

उनके आस पास कुछ सामान और बर्तन भी रखे हुए हैं।

यह कोई आवास या संस्थागत इमारत हो सकती है।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

दुकान के बगल में एक एक्सिस बैंक का ए_टी_एम भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक गैरेज या कार सर्विसिंग सेंटर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में रात के समय का एक आवासीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है।

ऐसा लग रहा है कि यह किसी पार्किंग क्षेत्र या शोरूम के बाहर का दृश्य है।

इस तस्वीर में एक बरफ से ढका हुआ ढलान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे एक दुकान या गोदाम जैसा स्थान दिखाई दे रहा है।

शायद किसी बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान लगती है।

इस तस्वीर में एक दुकान का अग्र भाग दिखाई दे रहा है जो सजाई गई है।